जहां पे दो कार खड़ी है एक वाइट कलर की एक ब्लैक कलर की बहोत सारे लोग हैं एक्टिव है व्हीकल --

एक पेड़ है बहुत सारे पीछे पेड़े है एक लड़का है जिसने ब्राउन और ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है एक ने ऑरेंज और वो दोनों फोन चला रहे हैं एक देख रहा है।

और पीछे पेड़ है और टेंट लगे हुए हैं बच्चों के स्कूल के बच्चे हैं टेंट का कलर वाइट है एक साइड झोपड़ियां बनी हुई है।

पी पीछे की साइड बहुत सारे लोग हैं वो भी वेट कर रहे हैं और दूसरी साइड जाने का सिडियाँ है।

इस फोटो में मुझे एक रमेश बुक्स स्टोर दिखाई दे रहा है कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं कुछ खड़े हैं दो तीन अंदर बैठे हुए हैं।

लाइटिंग डेकोरेशन है और पानी झरने मे से बह रहा है झरने का कलर ब्ल्यू है और ब्राउन कलर है।

और दो लड़कियां हैं और एक वाइट कलर का खंबा है और हॉल का कलर येलो और ब्लैक है और ब्राउन है।

इस फोटो में मुझे एक गोट दिखाई दे रही है एक बकरी दिखाई दे रही है जिसका कलर है व्हाइट और ब्लैक कलर है।

इस फोटो में मुझे एक बुक स्टोर दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी बुक्स हैं फोन पे का स्कैनर है कैलकुलेटर है।

बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत बड़ी बहुत सारी घास-फूस है ब्राउन कलर का आंगन है जहां पे लाइनिंग बनी हुई है।

एक हॉल बना हुआ हैं ऊपर लाइट्स है और बहोत सारी शॉप्स हैं।

सिपाही है जोकी पेड़ काटने से बचा रही है और पीछे मैदान है बहोत सारे पेड़ पोधै है बहोत सारे लोग है एक येल्लो कलर का--

इस फोटो में मुझे बहोत बड़ा पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है और सड़क दिखाई दे रही है सड़क के --

मधुर-मधुर समाज का दिखाई दे रहा है जिसका पिंक कलर की बिल्डिंग है वाइट कलर के गेट है।

इस फोटो में मुझे बुक स्टोर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ बलूंस लगे हैं बहुत सारी बुक्स रखी है अंदर एक रेड कलर की चेयर्स रखी है दो आदमी है।

इस फोटो में मुझे बीज दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारा पानी है पीछे बहोत बड़े पहाड़ है पेड पौधे हैं और मिट्ठी का --

इस फोटो में मुझे मूर्तियों की दुकान दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारी डेकोरेशन हो रखी है बहोत सारे फ्लावर पॉट है।